और एक नदी जा रही है जिसके ऊपर एक पूल है।

कितने कितने पेड़ हैं यहां पर।

यहां पे पत्थर गड़ा हुआ है।

यहां पर कितनी सारी पेंटिंगों की दुकानें हैं ये --

एक आदमी बैग लेकर चढ़ रहा है।

पानी की बोतल धरी है और यहां पर--

छोटा सा बोर्ड भी लग रहा है।

तरफ एक नाव पहली तरफ है।

पर सामने लड़ी टंगा टंग रही है।

चेयर पर बैठे हु हुए--

ये तुरंत ऊपर एक फैन लग रहा है।

यहां पर कोई फंक्शन वगैरा है जिसके--

पानी में स्नान कर रहे हैं।

ऊपर दो लिफ्ट लगी हुए है।

और यहां पे बच्चे की छोटी सी गाड़ी खड़ी हुई है।

ये शीशी वगैरा धरी हुई है।

एक आदमी बैठा हुआ है।

एक आदमी ने अपनी चेयर्स --

गूगल एक बहोत बड़ी कंपनी है।

और यहां पर गेट भी लग रहे हैं लोहे के।

इस पर एक टांग के ऊपर दूसरी टांग धर के बैठे हुए हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ी सड़क जा रही है सामने।

और यहां पर खेत भी हैं जिसमें कुछ न कुछ हैं कोई खाली पड़ा है।

यहां पर एक ट्रे है।

इसके अंदर अंगूर धरे हुए हैं।

तस्वीर है जो पांच हैं।

यहां पर कोई फंक्शन वगैरह हुआ है जिसमें--

पंद्रह रुपए का हर माल है।

एक बैग भी धरा है।

डब्बे के ऊपर फूल धरे हैं।